दीवार पर कुछ पेन्टिंग्स नजर आ रही है।

पे बोट खड़ी हुई है एक बोट का रंग लाल और एक बोट का रंग पिला नजर आ रहा है अरेरे --

यहा एक आदमी बैठा हुआ है जो बहुत सारी मछलिया बेच रहा है नीचे फर्श दिखाई दे रहा है फर्श का रंग निला नजर आ रहा है।

यहाँ एक राधा कृष्ण की मूर्ती नजर आ रही है जिसमे की माला चढ़ी हुई है माला का रंग पिला नजर आ रहा है।

बाहर गाड़िया खड़ी हुई है गाडियों के रंग सफ़ेद और लाल नजर आ रहा है गाड़ी के पास एक बोर्ड दिखाई दे रहा है बोर्ड का रं --

सड़क पर एक गाड़ी खड़ी हुई है गाड़ी का रंग काला दिखाई दे रहा है यहाँ एक दरवाजा नजर आ रहा है दरवाजे के --

का रंग हरा दिखाई दे रहा है झूलो के पिछे पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ो का रंग --